उसके बाज़ू में एक कुछ पेड़ तथा पहाड़ दिखाई --

वाइट कलर की शर्ट --

मुझे यहाँ पर एक बोहोत सुन्दर दृश्य दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक पॉलिथीन दिखाए दे रही है जिसके ऊपर राज लिखा हुआ है।

मुझ मे यहाँ पर एक दिखाए दे रहा है।

जिसने रेड कलर की शर्ट ब्लू कलर की जीन्स और रेड कलर की टोपी लगाए हुई है।